पौधा है पेड़-पौधा है बिल्डिंग है।

फूल के दुकान है माली बैठा हुआ है फूल का माला सब टांगा हुआ है।

हर केला के पत्ता है मैक है इधर केला के पत्ता है फूल हैं।

हार्डवेयर का दुकान ऐसा लगा लग रहा है।